इस ट्यूटोरियल में हम लिबरऑफिस बेस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम टेबल में डेटा को जोड़ने के बारे में सीखेंगे
रिलेशलशिप्स को परिभाषित करेंगे और बनायेंगे
पिछले लिबरऑफिस बेस ट्यूटोरियल में हम बेस बुनियादी डेटाबेस से परिचित हुए तथा सीखा कि डेटाबेस और टेबल कैसे बनायें
ट्यूटोरियल के दौरान हमने उदाहरण के तौर पर लाइब्रेरी नामक डेटाबेस भी बनाया तथा बुक्स टेबल भी बनाया
इस ट्यूटोरियल में हम लाइब्रेरी डेटाबेस के साथ शुरू करेंगे और सीखेंगे कि टेबल में डेटा कैसे जोड़ें
इसके लिए लिबरऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करें
इसके लिए हम स्क्रीन की बायीं ओर सबसे नीचे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे
अल्ल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें फिर लिब्रियोफिस सूटे पर क्लिक करें और लिब्रियोफिस बसे पर क्लिक करें
क्योंकि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पहले से ही लाइब्रेरी डेटाबेस बनाया हुआ है इस समय हमें केवल इसे ओपन करने की आवश्यकता होगी
यह करने के लिए ओपन एएन एक्सिस्टिंग डेटाबेस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें
रिसेंटली यूज्ड ड्रापडाउन बॉक्स में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस स्पष्ट होना चाहिए
अतः अब फिनिश बटन पर क्लिक करें
यदि आपने इसे नही देखा है हम विंडोज डाइरेक्टरी को ब्राउज़ करने के लिए ओपन बटन पर क्लिक कर सकते हैं
जहाँ लाइब्रेरी डेटाबेस सेव है
मिल जाने पर फाइलनेम पर क्लिक करें और ओपन बटन पर क्लिक करें
अब यदि लिबरऑफिस बेस प्रोग्राम पहले से ही ओपन है तो हम यहाँ से लाइब्रेरी डेटाबेस ओपन कर सकते हैं
सबसे ऊपर फाइल मेनू पर क्लिक करके और फिर ओपन पर क्लिक करके
हम विंडोज डाइरेक्टरी ब्राउज करेंगे जहाँ लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल सेव है
फाइल libraryओडीबी पर क्लिक करें और सबसे नीचे ओपन बटन पर क्लिक करें
अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं
लेफ्ट पैनल पर डेटाबेस सूची में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि राइट पैनल पर टेबल्स सूची में बुक्स टेबल दिखाई देता है
अब बुक्स टेबल पर राइट क्लिक करें
ध्यान दें यहाँ से आप विविध ऑप्शन चुन सकते हैं
अब इस टेबल में डेटा जोड़ने के लिए ओपन पर क्लिक करें
वैकल्पिक रूप से हम इसे ओपन करने के लिए टेबल नामे पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं
बुक्स - लाइब्रेरी - लिब्रियोफिस Base टेबल दाता व्यू नामक शीर्षक के साथ एक नया विंडो ओपन होता है
अब हम सीधे प्रत्येक सेल में वेल्यूस टाइप करके बुक्स टेबल में डेटा एंटर करना शुरू कर सकते हैं
ध्यान दें बुकिड कॉलम्स ऑटोफील्ड है
अर्थात बेस डेटा की प्रत्येक रो के लिए आरोही नम्बर्स स्वतः ही आवंटित करेगा
जिसे हम प्रविष्ट करते हैं
अब जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है रो दर रो सेल्स में डेटा इनपुट करें

अतः यहाँ हमारे पास हमारे टेबल बुक्स में सैम्पल डेटा की 5 रोज़ हैं
सबसे ऊपर फाइल मेनू पर क्लिक करके और फिर क्लोज चुनकर विंडो बंद करें
यहाँ आपके लिए नियत कार्य है
एक मेम्बर्स टेबल बनायें जो प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी संचित करेगा उदाहरणस्वरूप सदस्य का नाम और फोन नम्बर
निम्न 3 फील्ड्स को सम्मिलित करें
मेंबर इद फील्ड टाइप इंटीजर के साथ और इसे प्राइमरी की बनायें
नामे फील्डटाइप टेक्स्ट के साथ
फोन फील्डटाइप टेक्स्ट के साथ
ठीक हैजब आप कर चुके होते हैं तो मेम्बर्स टेबल इस तरह दिखाई देगा
इस विंडो को बंद कर दें
अब मेम्बर्स टेबल में 4 सैम्पल मेम्बर्स को जोड़ें जैसा अभी स्क्रीन में दिखाया गया है
अभी जिस तरह से हमने बुक्स टेबल के लिए किया

हो जाने पर इस विंडो को बंद कर दें
अब वापस मुख्य विंडो पर जाएँ और फिर से टेबल्स आइकन पर क्लिक करें
और तीसरा टेबल बुक्स इश्यूड बनाएँ
जब बन जाय बुक्स इश्यूड टेबल में निम्नलिखित फील्ड्स होंगे
इश्यू इद फील्ड टाइप इंटीजर
जो कि प्राइमरी की होगी
बुक इद फील्ड टाइप इंटीजर मेंबर इद Field टाइप इंटीजर इश्यू डेट फील्ड टाइप डेट रिटर्न डेट फील्ड टाइप डेट एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड टाइप डेट और चेक्ड इन फील्ड टाइप yesनो बूलियन ठीक है हमने बुक्स इश्यूड टेबल बना दिया है
और अब इसमें निम्न सैम्पल डेटा जोड़ें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
हालांकि यह अभी पूर्ण अर्थ नहीं बना सकता हम जल्दी ही समझ जायेंगे कि क्या हो रहा है

अब हमारे पास सैम्पल डेटा के साथ हमारे लाइब्रेरी डेटाबेस में तीन टेबल्स भी हैं
अब डेटाबेस में रिलेशनशिप्स परिभाषित करने के बारे में सीखते हैं
अतः हमने तीन भिन्न जानकारी के सेट को संचित करने के लिए तीन टेबल्स बनायें हैं
बुक्स मेंबर्स और इश्यू ओएफ बुक्स टो मेंबर्स
अब हम इन तीन टेबल्स में प्रत्येक पुस्तक प्रत्येक मेम्बर और प्रत्येक जारी पुस्तक की विशिष्ट पहचान के लिए कॉलम्स सेटअप करेंगे
वे प्राइमरी कीज़ हैं
प्राइमरी की के विविध लाभों में से एक यह है कि यह टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप्स स्थापित करती है
लेकिन हमें रिलेशनशिप्स की आवश्यकता क्यों है
बुक्स इश्यूड टेबल पर देखें
यहाँ हमें बुक इद और मेंबर इद फील्ड्स दिखते हैं
वे बुक्स इश्यूड टेबल में कोई भी वेल्यू रख सकते हैं
लेकिन उन्हें समान वेल्यूस के अनुरूप रखने की आवश्यकता होगी जैसे कि क्रमानुसार बुक्स और मेंबर्स टेबल्स में है
अतः यदि बुक्स टेबल में पुस्तक मैकबेथ की बुक इद 3 है
तो बुक्स इश्यूड टेबल की बुक इद में 3 का उपयोग करके हम अभी भी उसी पुस्तक का उल्लेख करेंगे
अतः इन दो टेबल्स को स्पष्ट रूप से संयोजित करने के लिए हमें अभी भी उन्हें किसी प्रकार से लिंक करने की आवश्यकता होगी
और उदाहरणस्वरूप आप यह कैसे प्रमाणित करेंगे कि मैकबेथ रवि कुमार को 2एनडी जून 2011 को जारी की गया थी
या आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि पुस्तक केवल लाइब्रेरी के सदस्य को ही जारी की गई है किसी अन्य को नहीं
यह सब रिलेशनशिप्स सेट अप करके किया जा सकता है जोकि डेटा को इंटरलिंक करने में मदद करता है
हमें सही फील्ड्स को लिंक करके बुक्स टेबल और मेम्बर्स टेबल से वेल्यूस का उपयोग करने के लिए बेस को फोर्स करने की आवश्यकता होगी
देखते हैं कि कैसे
लिबरऑफिस बेस मुख्य विंडो में टूल्स पर क्लिक करें और फिर रिलेशनशिप्स पर क्लिक करें
यह एक छोटा पॉप अप विंडो ओपन करता है
यहाँ हम सबसे ऊपर का टेबल चुनेंगे और एड बटन पर क्लिक करेंगे और अन्य दो टेबल्स के लिए पुनः करेंगे
पॉप अप विंडो को बंद करें
अब हम लाइन में तीन टेबल्स बुक्स बुक्स इश्यूड और मेंबर्स देखते हैं
क्लिक करके ड्रैग करके और ड्रॉप करके टेबल्स में अधिक स्पेस लायें
अब बुक्स टेबल में बुक इद पर क्लिक करें और इसे बुक्स इश्यूड टेबल में बुक इद पर ड्रैग और ड्रॉप करें
ध्यान दें इन दो फील्ड्स नेम को एक लाइन संयोजित कर रही है
अतः यहाँ हमने रिलेशनशिप सेट कर दिया है
मेम्बेरिड के लिए इसे पुनः करें
मेम्बर्स टेबल में मेंबर इद पर क्लिक करें और बुक्स इश्यूड टेबल में इसे ड्रैग और ड्रॉप करें
आप देख सकते हैं कि हमने अभी दो रिलेशनशिप्स बनाये
और यह है कि हम रिलेशनशिप्स कैसे स्थापित कर सकते हैं
और इसलिए इंटरलिंक महत्वपूर्ण डेटा रिलेशनल डेटाबेस में विविध टेबल्स में संचित हुआ है
अब हम लिबरऑफिस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि टेबल में डेटा कैसे जोड़ें
रिलेशनशिप्स को परिभाषित करना और बनाना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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद